जो बहोत घने हैं बहोत बड़े बड़े भी--

सब सामान अलग-अलग रूप में है।

काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये गैलरी में ग्रीन कलर की अम्म् वो कालीन बिछी हुई है।

और टेबल पे इयरफोन और मोबाइल भी रखा हुआ है।

जो काफी खूबसूरत सी लग रही है।

यह काफी खूबसूरत सागार्डन है।

इस गार्डन में हरे भरे पेड़ भी हैं।

गार्डन में पेड़ पौधे बहोत खूबसूरत से लग रहे हैं।

शो शो का जो कवर है वो ब्राउन कलर का है।

सोफा ओ के सामने जो टेबल है उस पे एक मोबाइल फोन रखा हुआ है।

उपर पुल साइड बन रहा है।

क्योंकि यहां पर एक बैनर भी लगा हुआ है।

मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं।

काफी बेहद खूबसूरत महिला की पिक्चर है।

अंदर हरे-भरे पेड़ हैं रोड काफी सुना है।

तरह से रोशनी आ रही है जाली भी लगी हुई है।

पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है।

जहां सूखी सूखी घांस भी है।

यहां पर मस्जिद जैसा बना हुआ है।

ऐसा लग रहा है बड़ी सी मस्जिद हो--

ये रेलवे स्टेशन की पिक्चर है।